पानी सफेद रंग का है यहां पे दो झरने दिखाई दे रहे हैं।

पास में एक और दुकान है यहां पे नीले रंग का एक पोस्टर लगा हुआ है।

एक लड़की है जिसने एक सफेद रंग की फ्रॉक पहनी हुई है।

यहां पे और भी बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

बीच में मेज रखी हुई है यहां पे एक सफेद रंग की कुर्सी है।

यहां पे एक दरी बिछी है जो हरे रंग की दिखाई दे रही है।

यहां पे दरवाजा पीले रंग का दिखाई दे रहा है जो जालीदार है।

सामने मेज रखी हुई है पीछे चर्च का सिंबल बना हुआ है।

इसमें स्कूटी है यहाँ पे बहुत बड़ा मैदान है।

यहां पे एक आदमी अंदर जा रहा है आसपास पेड़ पौधे हैं।